दिखाई दे रही है शॉप बच्चों के खिलोनों कि दिखाई दे रही है यहाँ पे काफी सारे बार्बी डॉल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे काफी सारे बच्चों के खेलने कि चीजें दिखाई दे रही हैं।

छत दिखाए दे रही छत पर वोटरप्रूफिंग का काम चल रहा है यहां पे काफी सारे लोग नजर आरहे हे दो लोग वोटरप्रूफिंग का काम करते दिखाए दे रहे है।

दिखाई दे रही है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर सफेद नजर आ रहा है बिल्डिंग मे काफी सारी खिड़किया नजर आ रही है।

दिखाई दे रहा है समुद्र काफी बड़ा दिखाई दे रहा है समुद्र का पानी काफी साफ दिखाई दे रहा है समुद्र में काफी ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है।

इधर यहा पर कुछ खंभे नजर आ रहे है यहा नीचे कुछ पट्टिय दिखाई दे रही है यहा भी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान काफी बड़ा दिखाई दे रहा मैदान में काफी सारे लोग नजर आ रहे रहे हैयहाँ पे कुछ लडकिया डांस करती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे काफी सारे लोग उन्हें देखते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया हैयहाँ पर फूलो रखे गये।

सामने कुछ बास्केट दिखाई दे रहे यहाँ पर एक आंटी बैठी हुई नज़र आ रही है आंटी के पीछे काफी सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर एक लड़की नजर आ रही।

रोड दिखाई दे रही है रोड के बाजू में कुछ खंबे नजर आ रहे खंबों में कुछ तार दिखाई दे रहे है सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही बिल्डिंग के नीचे काफी सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ कार जाते हुए दिखाई दे रही है।

यहाँ पेड़ पेड़ काफी बड़े दिखाई दे रहे है पेड़ का कलर हरा भरा दिखाई दे रहा है यहाँ कुछ छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक गेट नजर आ रहा है गेट काफी बड़ा दिखाई दे रहा है पीछे घर दिखाई दे रहे है।